हॉस्पिटल है जो एक आदमी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है। सभी डॉक्टर और नर्स उसे देख रहे हैं। शायद ये कोई प्रेग्नेंट लेडीज का चेकअप हो रहा है यहाँ पे हो रहा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो दो डॉक्टर्स है वो दोनों देख रहे हैं।